एक बड़ा सा पंडाल शायद पूजा पंडाल दिख रहा है उसके बगल में एक पेड़ है पंडाल के बाहर एक बहोत बड़ी लाइन खड़ी है अंदर जाने के लिए।

ये एक छोटा-सा पूल है स्नान करने के लिए उसमे एक फैमिली है एक छोटा बच्चा दो उससे एक छोटा बच्चा एक उस साइड एक महिला है।

तो पीछे भी दो बच्चे है ऊपर मे खड़े है जो पानी का मजे ले रहे हैं स्विमिंग का।

उसकी गुम्बज बहुत बड़ी हैं पीछे उनकी फूल पेड़ो का पेड़ हैं बहुत सारे पेड़ हैं मंदिर के पीछे भी बड़े बड़े पेड़ हैं।

उम्म ऊपर मे दो चार पंखा लगा हुआ हैं लाइट्स लगे हुए हैं बगल में।

उसके पीछे एक ब बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारी सड़क पे तारे दिख रही है और आस-पास में दुकाने है।

यहाँ वाइट ड्रेस में खड़े हैं और कुछ बच्चे सेना के ड्रेस में सोये हुए हैं ।